यहां पे इसने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा है लगता है किसी कोरोना टाइम का फोटो लिया गया है।

और यहां पे बलूंस भी लगे हुए हैं पंखा भी लगा हुआ है यहां पे और यहां पे मैं आपको तो बहुत हमको जाने की स्टैच्यू ऑफ गॉड भगवान के मूर्ती लगी हुई है जिसकी लोग--

बहुत सी अच्छी टेबल है और टेबल में यहां पे अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे डिज़ाइंस के यहां पे--

ये मुझको किसी शादीबारात का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे लोग आपस में बैंड बाजा बजा रहे हैं।

बहुत इन्होंने अच्छी तरीके से लाल पीले नीले फूलों से सजा रखा है और यहाँ पे काफी काफी उम्र के लोग जो भी यहाँ पे बैंडबाजी में शामिल हो रहे हैं कोई भोभो बजा रहा है कोई पोंपो कर रह--

और ये बहोत ही रेस्टोरेंट का काफी अच्छा फोटो यहां पे सी_सी हैं और इसकी बहोत अच्छी डेकोरेशन की यहां पे प्लाई भी लगा रखी है यहां पे फुहा--

यहां कॉफी पीने के लिए जाते हैं जो इन्हें बहुत अच्छा लगता है कॉफी यह हब्स ।

ये बहोत ही अच्छा शानदार किसी रेस्टोरेंट का फोटो दि दिखा दिखाई दे रहा है यहां पे मुझ को जहां पे लिखा है यानी की भारत का सब से बड़ा पराठा भारत का सब से बड़ा पराठा यहां पे मिलता है।

एक यहां पे के नाम से कोने पे काफी बड़ी गाड़ी खड़ी है एक यहाँ पे अ छोटी फोर्स भी लग रही है स्कूटी पे बाइक पे डिलीवरी प्वाइंट के नाम से स्मार्ट प्वाइंट है यहाँ पर ये।

ऊपर यहां पे सीसे भी लगे हुए हैं कांच के और जो कि मैरिज हॉल है और यहां पे बुजुर्ग भी--

रेस्टोरेंट का फोटो है इट्स वेरी गुड सो ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट यहां पे खाना बहुत अच्छा मिलता होगा।

एक बहुत ही शानदार मुझको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है जो कि किसी स्कूल या स्कूल का फोटो जहां पे यहाँ पे टीचर खड़ी हुई है।

बहुत ही शानदार फूल है यहां पे पीले रंग के गेंद की यहां पे गेंद की जो पार्किंग में लगाए जाते हैं पूजा भी की जाती है माला भी बनाई जाती है गेंदों के फूल की बहुत ही शानदार अच्छे लग रहे हैं देखने में।